इसमें इस दि फोटो में दीवार पर कुछ टंगी पेंटिंग दिखाई गई है कुछ टंगी पेंटिंग दिखाई गई है इस फोटो में हमें--